यह एक रूम है जिसमे आठ जिन्स लग लगे हुये है जिसमे से दो वाईट और एक ब्राउन कलर का है|

इसमें से तीन बच्चे और तीन पुरुष है एक पुरुष पुरुष बाइक पे बैठे है और एक बच्चा साइकिल लेके खड़ा हुआ है।

ये ज्यादातर व्हाइट कलर में है और ये रात का सिन है और यहा पे लाइट भी लगी हुई है जो इन कारों को काफी खूबसूरत दिखा रही है।

कहीं के भी व्यक्ति आके कहीं से भी गाड़ी ले के बुक करके कही भी जा सकते है यहा पे बहुत सारी गाड़िया लगी हुई है जो सारी व्हाइट कलर की है और यहा पे एक व्यक्ति कहीं से आ रहे है।

''यहाँ पे कोमा ज्योति स्कूल है इसके यहाँ पे तीन-चार मेम और एक लड़का है और यहाँ पर--''

और बहुत ही ज्यादा मात्रा में लगी हुई है वहाँ पर एक दो लोग साइकिल से इधर-उधर जा रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा है।